यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अपने फोर व्हीलर को लेके ठीक कराने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे मैकेनिक होते है ।

इसका किराया बहुत कम लिया जाता है।